अगल बगल बहोत सारे गिट्टी है बालू है।

उधर पहाड़ है आसमान पूरा साफ है।

अंदर में छोटे छोटे रैक बनाए हुए हैं जो व्हाइट कलर के--

आसमान पूरा साफ है और यहां पानी है जो गंदा है।

छोटे छोटे नाव बनाकर रखे हुए हैं लकड़ी का कुछ टूटी हुई नाव है तो कुछ अच्छी नाव है।

डायरी रखा हुआ है और डब्बा रखा हुआ है।

ऊपर एक पुल बनाया हुआ है पुल पे बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं।

शीशा लगाया हुआ है और नीचे टायर लगाया हुआ है।

यहां पर खाइ का दृश्य देख रहा है और यहां पर पूरा धुंध छाया हुआ है।

नीचे में छोटे छोटे घर है और उसमें से बहुत सारे लोग हैं।

इसमें बहोत सारी लाइटें लगाई हुई है व्हाइट कलर का।

सामने एक घड़ी टांगा हुआ है उसके नीचे कैलेंडर टांगा हुआ है।

इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जैसे पाइप रखा हुआ है और बाथरूम वाला रखा हुआ है।

अंदर में बहोत सारे ब्लैक ब्लैक तार ये सब है।

यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो डांस कर रहे हैं।

खिड़की के सामने पर्दा लगाया हुआ है तीन ठो वो भी पर्पल कलर का।

दो चेयर है जो रेड कलर की है एक दरवाजा है।

करकट दोगो लगाया हुआ है एक करकट व्हाइट कलर का है एक पीला कलर का है।

सामान का बोरा व्हाइट कलर का है तगाड़ी रखा हुआ है।

बगल में चेयर रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है एक ब्राउन कलर का चेयर है।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

इधर उधर तारे गई है पोल से कनेक्ट है।

बगल में बहोत बड़ा बड़ा हाता बनाया हुआ है।

एक महिला है जो फोन से बात करते हुए जा रही है।

एक आदमी पीछे खड़ा है और अंदर में बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे लगाए हुए हैं फूल भी लगाए हुए हैं।

इसमें रेड कलर का पोस्टर लगा हुआ है उस पर ए_टी_एम लिखा हुआ है।

यहां पर ऑफिस का दृश्य दिख रहा है।

दो लाइटें लगाई हुई हैं और नीचे में दो कुर्सियां रखी हुई है वो भी ब्लैक कलर का।

पेड़ को उठा रहा है ये तस्वीर में दिख रहा है।

खिड़की ब्राउन कलर का है बाहर में गेट लगाया हुआ है।

जाली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं।

बुढ़ा आदमी है जो हाथ में डंडा लेकर वो चल रहा है।

अंदर लाइट जल रहा है अंदर बड़ा बड़ा रैक बनाया हुआ है।